जिसमें ए और एक झंडा लाल रंग का नजर आ रहा है।

आ ये मंदिर है और मंदिर के नीचे सीढ़ियों पे एक पेड़ लगा हुआ है।

ये स्टेज पर डांस कर रहे हैं उनके नीचे कपड़ा लगा हुआ है।

इस जगह पे ऊपर छत लगा हुआ है।

यहां पे पानी है और यहां पे कुछ सीढ़ियां हैं जिस पे दो आदमी बैठे हैं।

इसपे एक बैनर लगा है जो हिंदी में लिखे हैं बोर्ड ।